यहां आसमान बहुत खुला खुला दिखाई दे रहा है।

राइट साइड में वॉल सब--

उधर पे बहुत सारे लड़के दिख रहे हैं।

पीला और काला रंग का बैलून सब टंगा हुआ है।

हरे रंग और सफेद रंग का ये बिल्डिंग बनाया गया है।

पर बड़े ही सुंदर बादलें आसमान में दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नई दुकान है और यहां ऊपर बहुत सारे बैलूने लगाए हुए हैं जीस--